हेलो गाइस देखिऐ आप देख सकते है एक स्विमिंग पूल है और देखिए इस में सब लोग इंजॉय करने आते है सब लोग नहाता है सब लोग घुमने आता है।